इस फोटो के अंदर सामने एक कृष्णा होटल है श्री मेहता जी की बाहर मोटोसाइकिलें खड़ी हैं गाड़ी खड़ी है।

और अंदर के साइड कुछ आदमी खड़े हैं यहां क्रिश्चियन होटल के बारे में कोई चार्ट पे कुछ लिखा हुआ है।

इधर एक रूम बना हुआ है और सामने कुछ सफेद कलर के घर दिखई दे रहे है।

सामने बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जो दो मंजिल ऊंची है आगे गेट लगा हुआ है गमले लगे हुए है छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है पेड़ लगे हुए है।

और इस मोटर साइकिल के आगे कुछ लोहे के खुले पड़े है ब्लैक ब्लैक कलर के--

इस फोटो के अंदर इस कमरे के अंदर एक बेंच है सफेद कलर की बेंच के पीछे एक कुर्सी पड़ी है।

नीचे कुछ मोटरसाइकिल खड़ी है।

बीच में एक बेंच है बेंच के ऊपर कुछ बोटल पड़ी है कुछ रजिस्टर पड़े है और कुछ स्कैनर पड़े है फोन पे वेटिंग वाला।

उधर की साइड दो कुर्सियां पड़ी है सफेद कलर की कुर्सियों के पीछे कुछ सामान रखा हुआ पड़ा साबुन तेल ऐसे --

और बाहर की साइड यहां दरी बिछाई हुई है नीचे कुछ यहां सोफे पड़े--

यहां पर एक लाइब्रेरी रूम है ए_सी लगी हुई है नीचे कुछ लड़की पढ़ाई कर रही है सामने कुछ अलग अलग स्टोर बॉक्स बनाए हुए है।